तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये कितना बड़ा समुद्र है समुद्र के आसपास --

तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक दरगाह है ये दरगाह देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और हरे रंग का है और यहां पे अगल-बगल --

गांव की इलाके में भी ये कोई सिटी एरिया की जगह है जहां पे भी बहुत ही खूबसूरत सा दो घरे है।

तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कोई गेरेज है जहां पे --

तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक गांव के इलाके में तीन का अं कार खड़ी है।

खा सकते हैं और अपना भूख मिटा सकते हैं कुछ पल के लिए।

तो जैसा कि आप देख रहे हैं देखने में ये एक बस डेपो दिख रहा है जहां पे दो से तीन बस खड़ी है ।

तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक जेल जंजाल में एक चीता दिखने में तो ये चीता है।

सुंदर तरीके से डिजाइन दिया गया है इस कुर्सी को और पीछे का दरवाजा भी आप देख सकते हैं वो भी लकड़ी का है और कितना खूबसूरत दिख रहा है देखने में --

चित्र और काफी अच्छी तरीके से बताया गया है कि गोवा में क्या प्लेस कैसा है और कितना सुंदर दिख रहा है।

सारी तरह प्रकार की दवाइयां मिलती है रोगियों के --

तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बड़ा --

लाजवाब दिख रहा है और खाने पे इसका पता चलेगा।

पर्यावरण के बारे में क्या ही कहना यहां पे बड़े-बड़े नारियल के पेड़ है और भी कई सारे अलग-अलग पेड़ पौधे यहां पे हैं और --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

तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम.एस.सी. नाम का ये एक कॉलेज है जिसकी --

तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये एक सलून है जहां पे एक लड़के का दूसरा लड़का बाल सुखा रहा है और वो --

बहुत ही आलीशान बंगला है पीछे की ओर और बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

कई सारे पेड़ पौधे भी है और शांति त भी है और ठंड गी भी है और यह देखने में बहुत ही सुंदर --

प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाह से और यहां पे पंखा है और --

हरे और सफेद रंग का बहुत ही खौफिया पेंट किया गया है।

कई मैनेजर्स गाड़ियां ठीक कर रहे हैं तो कई अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पार्ट सही कर रहे हैं।

तो जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक भरेस खेतों के बीच में सोलार रखा हुआ है।

जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मंदिर है श्री पुरुषोत्त प्रशत्र कितनी सुंदर मंदिर है।

देखने में खूब बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है ये प्राचीन काल का --

जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री गणेश जी की मूर्ति दिख रही है और कई सारे पुरुष --